पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ छोटे पेड़ दिखाई दे रहे कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे। इसपे एक पेड़ की बहोत सारी टहनियां मुझे यहां दिखाई दे रही --

इस इमेज मे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर डबल मंज़िला है घर के बहार मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी पत्तिया झड़ी हुई हैं ।

इस इमेज में मुझे एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर मुझे ब कुछ गड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और बगल में मुझे एक स्कूटी दिखाई रही रही --

इस इमेज में मुझे एक धागा मशीन दिख रहे है। यह मशीन लकड़ी की बनी हुई है इस मशीन पे मुझे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो के साइड मे मुझे कुछ बाइक्स ओर कुछ कार दिखाई दे रही हैं ।

ऑटो के किनारों पर दुकाने लगी हुई हैं बो--